गाड़ी बा घर बा कटरैन बा पोल बा ट हरा-भरा पेड़ बा।

पोस्टर बा पलान बा पेड़-पौधे बा और सफेद कलर के पोस्टर टाँगल बा ठेला बा साइकिल बा।

सारे गाड़ी है बहुत सारे लोग भी है। गु घर है सफेद कलर का राँगा हुआ है।

खूब बड़ा स फील्ड बा घर बनल बा।